सामने एक बहोत बड़ा पार्क नजर आ रहा हैं।

सामने में एक बिल्डिंग देखने को मिल रही है और उसके इधर एक बहुत ही अच्छी पार्किंग है वहाँ पर ढेर सारी साइकिल खड़ी की गई है और उस बिल्डिंग के--

और वहाँ पे बहुत सारे ए_सी भी देखने को मिल रहे हैं और नीचे गमला में बहुत अच्छे-अच्छे पैर-पौधे भी देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पे एक लड़की भी खड़ी नजर आ रही है।